यहाँ पर एक बहोत ही बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं बिल्डिंग का कलर हमे भगवा दिखाई दे रहा है और हमे यहाँ पर बहोत सारे दरवाज़े दिखाई दे रहैं है जो की नीले कलर के नज़र आ रहे है और हमे यहाँ पर बहुत सारी खिड़कीयाँ दिखाई दे रही हैं।

एक बहुत ही बड़ा गाय का तबेला दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारी गाय दिखाई दे रही है जिसमें से एक गाय का कलर हमें ब्राउन दिखाई दे रहा है एक गाय का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें बहुत बड़ा पेड़ झाड़ दिखाई दे रहा है झाड़ी के ऊपर --

यहाँ पर एक बहोत बड़ा दिखाई दे रहा है खेत में हमें एक झोपड़ी दिखाई दे रही है झोपड़ी के ऊपर हमे बहोत सारी बोरियां रखी दिखाई दे रही है झोपड़ी-झोपड़ी घास की बनी हुई नज़र आ रही है।

यहाँ पर एक बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है लोगों में हमें बहुत सारी औरतें दिखाई दे रही है और हमें यहाँ पर एक पोस्टर दिखाई दे रहा है और हम यहाँ पे बहुत सारे --

हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दरगाह दिखाई दे रही है दरगाह की बिल्डिंग नज़र आ रही है और हमें वहाँ बिल्डिंग का नज़र बिल्डिंग का कलर हमें सफेद दिखाई दे रहा है और हाँ वहाँ पे हमें एक गेट दिखाई दे रहा है जोकि नीले कलर का नज़र आ रहा है और --

यहाँ पर एक बहोत ही बड़ा प्रोग्राम होता हुआ नज़र आ रहा है और हमें यहाँ पर बहोत सारे पर्दे दिखाई दे रहे है और हमें यहाँ पे छत पे बहोत सारे लाइट दिखाई दे रहे है और हमें यहाँ पे बहोत सारे --

बहुत सारे बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे गार्डन में घूमते हुए नजर आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है।